देखने लायक स्कूल बा ये देखल खातिर सब कोई आवता कितना मस्त लगाता ये स्कूल देखि नु।

अम्म कोन ट्रैन ह ऐसी पता नईखे चलतलेकिन बढ़िया हआदमी आवता जाता बड़ी सुन्दर--

मॉल हर एक चीज़ मिली बहुत सुंदर-सुंदर मिली।

यहाँ पे भीड़ भाड़ कम बा देखि की करत है कॅरोना के चलते भीड़ भाड़ भी कम है यहाँ बड़ी नेक बा बड़ी अच्छा लगाता देखे मै कितना सुंदर लगाता।

अरे यार बैठना यह फुल पटी जइसन पेंट करल ह।

देखे मै कितना बढ़िया लगत है नीम का पेड़ हवा उस नीम का पेड़ दिखत है इतना अच्छा पेड़ है घना घोर मत पूछी बड़ी बड़का पेड़ हओ।

रा के देख लीजिएकितना बढ़िया लागा ता मत पूछी।

बहुत अच्छा लागा ता देखे लायक बा इतना निक लागा ता की का कही बड़ी बढ़िया लागा तादेखे में।